पहाड़ है जो की गुफा जैसा लग रहा है। उसके अंदर सभी लोग रात में घुस के इसमें फोटो उटो ले रहा है। ऐसा लग रहा है की कोई घूमने वाला जगह है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यूनिक लग रहा है।

पूरा सदर अस्पताल है गोपालगंज का जो इसमें पेड़ एगो लगाया गया है नारियल का। शो-पीस में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।